मुझे पेड़ दिख रहे हैं आस पास घर दिखाई दे रहे हैं मुझे एक छोटा स्पीकर दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और मुझे एक पिंजरा देख रहा हैं और कुछ लिखा हुआ दिख रहा--

और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे है और कुछ लोग दिख रहे है।

मुझे खाली ग्राउंड दिखाई दे रहा है और कुछ दुकाने दिख रही हैं।

मुझे बाइक दिखाई दे रही है एक कुत्ता दिखाई दे रहा है।

मुझे एक स्कूल दिखाई दे रही है स्कूल में मुझे बेंच दिखाई दे रही है और मुझे--

फ़ाइलें दिख रही है मुझे पानी की बॉटल मोबाइल दिख रहा है लाइट दिख रही है।

मुझे कुछ स्टीकर दिख रहें हैं और मुझे घास दिख रहीं हैं पेड़ पौधे दिख रहें हैं मकान दिख र--

मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही है मुझे कुछ पैकेट दिख रहे है।

और कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं कुछ गमले दिख रहे हैं।

को बाहर दिख रही है पानी की बॉटले दिख रही है।

मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है। स्टेज पर मुझे येलो कलर के--